ये घर बना है सफेद रंग की है दीवाल खड़े हैं और पेड़ पोधे हैं हरी पत्तियां हैं सफेद नीला बादल है।

नीचे कि साइड पे फ़र्स है जो सफेद है और डिवाइडर बना जो सफ़ेद और नीले रंग कि की है।

एक आदमी जो पाइप को कस रहा है काले रंग की पाइप है और प्लास से कस रहा है लड़के ने पीले रंग का टोपी पहना हुआ है और कथे रंग का जैकेट पहना हुआ है।

ये एक दुकान है बहोत सारी सब्जी रखी गए है केले रखी गई हैं और सेब रखे गए हैं और गाजर रखे गए हैं गांठ गोभी पपीता फूल गोभी हरी बैंगन --

ये बोले जो सफ़ेद और लाल रंग की कुर्सी है बगल में दीवाल जो नीले र --

हारमोनियम रखी गयी है जो काले और ब्लू कत्थे रंग की है बटन है जो सफ़ेद और काले रंग की है बैग --

दिपक जो हरे रंग के ऊपर टिने लगी हुई हैं सामने पेड़-पौध हरी व की पत्तियाँ सफेद नीला बादल है।